सर पे कैप पहन रखी हैं।

सामने एक उचाई पे एक आदमी खड़ा हुआ हैं जिसने हाथ में पाइप पकड़ रखा हैं जो हरे रंग का हैं।

जहाँ पे एक डाइनिंग टेबल हैं जो काले रंग की हैं इसपे शीशा है।

एक के हाथ में कुछ सामान पकड़ रखा है यहाँ की दीवारे जो है वो हरे रंग की है जिसमे नीला दरवाजा है जो लकड़ी का है।